और बीचे से एक रास्ता गया है उस तरफ की दिवार पे एक दरवाज़ा बना हुआ है।

और इस तरफ की दिवार पे एक मूर्ति लगी बनी हुई है। उसके बाजु में थोड़ी सी जगह पड़ी है जहाँ पे एक खम्बा व लगा हुआ है ।

इनके पीछे एक पाइप लाइन लगी है जिसमें एक फुव्वारा दिखाई दे रहा है।

दो लोगो ने छाता ले कर खड़े है और उनके पीछे पेड़ की घनी आबादी दिख रही है।

यह एक यूको बैंक का ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है जिस पर यूको बैंक का पोस्टर लिखा लगा हुआ है।

कुछ के बन बंडल्स एक साथ रखे है कुछ अलग-अलग कलर एक साथ रखे हुए है।

पहाड़ो पर काई जमी हुई है घास लगी हुई है और पहाड़ो के बीच घना जंगल दिख रहा है।

सीलिंग पर एक बड़ी सी ए_सी लगी हुई है उसके आस-पास छोटी-छोटी एल_इ_डी लाइट लगी हुई है और यहाँ पर एक रथ में--

यहाँ एक स्पा दिखाई दे रहा है जहाँ एक सोफा रखा हुआ है सोफे के ऊपर एक स--

ये बेसिन बना हुआ है हेयर वाश करने के लिए और उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहाँ एक घास और टिन का शेड लगा हुआ है जिसके नीचे पानी की टंकी बनी हुई है जिसका आकार आयताकार है।

और आस-पास बहोत सारे हिरण खड़े हुए है जो पानी पीने आये है।

वे जोकि झुंड में लगे हुए है जिनका अ आकार ऊपर से गोल है और नीचे से एक त्रिकोण दिख रहा हैं।

पेड़ो की लताएं लटकती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिस पर खूब सजावट की गयी है।

और गेट के अंदर बीच-बीच में के तस्वीर लग-लगी हुई रखी है और सामने से दो लड़के आते हुए दिखाई दे रहै है।

जिसकी छत त्रिकोण आकर की है और उसके सामने एक खम्बा लगा हुआ है।

और उसके बाजु में ए_सी लगी हुई है यहाँ पे इस कमरे में दो ए_सी लगी हुई है।

इनमे से कुछ बच्चों ने अपने मुँह पर मास्क लगाया हुआ है यहाँ पर एक टीचर दिखाई दे रही है जो बच्चों को कुछ समझाते हुए दिखाई दे रही है।